यहाँ पर रोड के ऊपर हैं पर थोड़े-थोड़े गड्ढे भी हैं।

यहाँ पर एक बड़ा गेट दिख रहा है जिसके अंदर एक कमरा है जिसमे झूमर भी लगा हुआ है।

और दूसरा व्यक्ति शटर ओपन कर रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा गेट दिख रहा है काफी सारे बड़े लोग यहाँ पर प्रसाद वगेरह दे रहे हैं।

यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ और पिछ सामने पहाड़ भी खड़े हुए है।